इसके अगल-बगल यह नारियल के पेड़ बहुत ही सुंदर लग रहे हैं।

यहां पे लाल हरे और सफेद कलर के गुब्बारों से इस स्टेज को सजाया गया है जो कि काफी सुंदर है।

ये मूर्ति बहुत ही सुंदर तरीके से बनाई गई है।

इसकी कलाकारी बहुत ही लाजवाब है।

जो कि शाम का है शाम के समय यह डी_एस_एल_आर कैमरे से खींची गई तस्वीर है जिसमें एक काफी दूरी पर एक बहुत बड़ा मकान दिख रहा है जो कि सफेद रंग का है और एक मीनार भी दिख रही है।

या किसी दुकान का दृश्य लग रहा है जहां पे बहुत सारी मछलियां रखी हुई हैं।

मछली खाने से हमारे शरीर में बहोत ताकत मिलता है और इसमें कई तरह के प्रोटीन भी मिलते हैं।